जो की ये कार्यक्रम में सहयोग रहें ---

इस इमेज को देख कर हमे ऐसा लग रहा है कि कई सारे बच्चे इसमें एक गेम प्रतियोगिता हो रही है।